और बहुत ही खूबसूरत नजारा है कि नीचे इतना सुंदर मतलब फ्रेश बिल्कुल कोई गंदगी नहीं है पानी में ।

और गिफ्ट देने के लिए लोगों को बहुत ही सुंदर सुंदर गिफ्ट्स वगैरह यहां पे हैं बहुत ही अवेलेबल सामान है।

दूर दूर तक है और बहोत बड़ी बड़ी बिल्डिंगे है।

शाम का समय है खेत में लोग टहल रहे हैं धूप सूरज --

और उनके साथ उनकी मैम है और बच्चों ने बहुत सारा सीट लेके काम कर रहे हैं।

और बहुत सारे गमले हैं जिसमें पौधे लगाए हुए हैं।

जेंस लेडीजें जी एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं।

यह एक ऊंची बिल्डिंग की छत है जिस पे से बहुत बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।